साथ अपनी फोटो खींच रहे हैं यहां बहुत सुंदर सुंदर साड़ियां--

की इमारतें बहुत ऊंची है स्कूल का रंग ब्राउन है।

सारी साइकिल रखी हुई हैं।

लोहे का दरवाजा भी है और यहां पर एक मंजी और टेबल रखा हुआ है।